एक व्यक्ति ढोलक बजा रहा है।

बड़ी सी जिसको लग रहा है आज उदघाटन हो रहा है।

बहुत ही शानदार दिख रहा है।

ये कोई बिल्डिंग है जो बड़ी सी |

जो कि जा रहे है उधर और बिल्डिंग है एक दो छोटी छोटी बिल्डिंग है।